ये चित्र किसी फ़ैक्टरी का है जो की सामने फ़ैक्टरी में कुछ वर्कर कुछ मशीनों द्वारा काम कर रहे है और कुछ छोटी-छोटी बाइके है जिनके ऊपर से कुछ समान ले जाया जा रहा है।

चित्र किसी खेत का है जो की सामने खेत में हरी हरी फ़सले दिखाई दे रही है और कुछ बड़े पेड़पौधे दिखाई दे रहे है और आसमान साफ दिखाई दे रहा --

सफेद और नीले रंग की है और सामने बहुत ही खुली सड़क भी दिखाई दे रही है और आसमान दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर किसी खेत का है जो की सामने खेत के अंदर खेती की जा रही है और कुछ छोटे-छोटे घास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी सामने दिखाई दे रहे है।

यह चित्र किसी खेत का है या बाग का है जो की सामने बहुत सारे पेड़पौधे लगे हुए है और कुछ हरे रंग के पेड़पौधे है कुछ थोड़े थोड़े सके हुए है और नीचे घाँस भी है।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

ये चित्र किसी गौशाला का है जो की सामने बहुत सारी सफेद और काले रंग की गाय खड़ी दिखाई दे रही है जो की सामने पानी पी रही है और उनके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।